सब्जी दुकान है और यहाँ पर फ़ूलगोभी --

और पेड़ के नीचे एक बाइक --

केक दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर कौन से काम--